और केला का पत्ता है प्लेट है व्हाइट कलर का और दो ग्लास रखा हुआ है।

और कुछ नए-नए कार भी दिख रहे हैं।